यहां पर हम सॉस और अलग अलग चीजें देख सकते हैं।

मूर्ति का दृश्य दिखाया गया है जिसमें एक मूर्ति ने--

पहाड़ के ऊपर देख सकते हैं।

एक व्यक्ती को हाथ खोलकर खड़े हुए भी देख सकते हैं।

हम कुछ व्यक्तियों को टैटू शॉप में--

कुछ गाड़ियां और एक ट्रक भी खड़ा हुआ देख सकते हैं यह नजारा रात का है।

यहां पर रेता और बजरी के ढेर लगे हुए है।

जिसके आगे एक मैदान बना हुआ है।

काले रंग के बगुले को नदी में चलते हुए एक टांग पर--

अलग अलग प्रकार के नेट से बने हुए--

जहां पर हम अलग अलग प्रकार की दवाइयां और अलग अलग प्रकार के प्रोटींस भी देख सकते हैं।

जहां पर हमे एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें एक बेंच प्रेस मशीन --

जिस पर लिखा है प्रो चो फिट ।

इस दुकान में एक कांच भी देख सकते हैं जोकि टेबल बनाने के कार्य में इस्तेमाल होता है।

लड़कियां यहां पर डांस के बाद फोटो खींचा रही है जिन्होंने बहोत ही सुंदर कपड़े पहने हुए है।

जहां पर पटरियों के ऊपर एक लाल रंग की ट्रेन खड़ी हुई है।

यहां पर छत पर हम एक ए_सी और एक ए_सी के साथ एक कैमरा भी देख सकते हैं।

इस तस्वीर मे हमे जंगल से निकलती हुई--

ट्रेन के आखिरी डब्बे पर एक येलो कनर कलर के क्रॉस का निशान देख सकते हैं।